अब बस के बगल में पेड़ लगा हुआ है उसका रंग भी काला है ऊपर असमान दिखाई दे रहा है उसका रंग---

एक साइड से बसें निकल रही हैं जिनमें का काँच लगा हुआ है| उसका रंग काला है बस का रंग सफेद है| साइड़ से एक बाइक जा रही है उसमें दो आदमी बैठे हुए हैं।

पन्नी कपड़े काफी सारे लगे हुए इसका कलर काला है पुल के नीचे से नदी है पानी बह रहा है पूल के उस पार पेड़-पौधे ----

खड़ी हुई हैं जिनका कलर सफेद है| पेड़ लगे हुए हैं जिनका रंग हरा है।

इसके अगल-बगल दो स्टूल रखी हुई है इनका कलर पीला है और काला है और चैनल गेट लगा हुआ है जिसका कलर हरा है।

जिनका रंग लाल है और अ ब बाइक खड़ी हुई है उसका रंग सफेद है।

और मंदिर का रंग क पीला है| मंदिर के अंदर एक पेड़ लगा हुआ जिसका रंग काला है और मंदिर के जो की दिवाल लगाई गई है उसका रंग सफेद है।

यहां पे दो गाड़ी खड़ी हुई है गाड़ियो का रंग काला है उसके सामने दुकान खुली हुई है और दुकान मे काफी सारा समान है कूलर है पंखा है जिनका रंग सफेद काला है।